यू तो भाई यार भारत डाक विभाग है भारत डाक विभाग में यार हम कोई चिट्ठी पहले भेजते थे तो --

इस पर अनार केले सेक संतरे लग रहे हैं ये खानी चाहिए हमें --

पतंग से एक तो हाथों की प्रैक्टिस सही रहा वो पतंग पहले हम जब छोटे-छोटे के थे ।

भाई क्लासरूम यार बचपन में पढ़ा करो क्लासरूम बड़ा मजाक करो।

होता है इसके अंदर।

बेड पे लेटे हुए है बड़ा अच्छा सा लगता है यहाँ लेटने में।

अमूल की चॉकलेट वगैरह खाने में बड़ा मजा आवे यार अमूल को दूध में बड़ा विटामिन यार दूध पीने से फायदा हो --

और मतलब फिर मुझे अभी भी हम --

हम भी अपने बच्चों को इंस्टिट्यूट में पढ़ाएंगे इंस्टिट्यूट में इंग्लिश में बात होती है भाई।

इसकी खुशबू कितनी अच्छी होती है यार ।

यार ये भी क्या फोन है इसको हम लोग तोड़ लेते हैं ये बेचारे --

यार देखभाल का चला करो मेरे भाई लोग बहुत तगड़ा एक एक्सीडेंट रहे लग पे --

स्विमिंग करनी आ जाएगी सबसे अच्छी बात ये है --

जो भी चीज माँगनी होती है वो चीज उसको उठा के दी ये नहीं है की धूंडनी पड़ती है की कोई चीज कहा रखी है कहां नहीं रखी सबसे अच्छी बेस्ट बात यही लगी है।

मशीन ऐसी होती है जिससे क्या अपने सड़के वगैरह पर वो ब वो सड़के बनती है इससे सीमेंट वाली सड़क जो बनती है और अपने हम जैसे क्या बिल्डिंग वगैरह बनाते हैं तो इसमें उसके लिए हम अपनी च लेंटर वगैरह के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे बेस्ट होता है कि पचास-पचास आदमियों का काम एक मशीन कर सकती है। सबसे बेस्ट यही चीज है।

तो वहां पर सूर्य की किरणें निकलती है ना बड़ी प्यारी सी लगती है यार बोहोत अच्छा महसूस कराते हैं हमें इससे बोलते --

ऐसा लग रहा है जैसे कि झील वगैरह में जैसे हम जाते हैं कि जैसे नैनीताल में एक झील होती है वहां पर वोटिंग वोट करने के लिए नाव वगैरह होती है। नाव में सबसे अच्छी बात ये होती है घूमे और हमें खासकर ध्यान देना चाहिए कि नाव में कोई छेद वगैरह नहीं हो रहा हो कहीं से कहीं से कटफट नहीं रही हो इससे पानी भर जाता है। हम अपनी सेफ्टी हो कहीं भी हम नाव वगैरह में जाए तो अपनी एक वाटर प्रूफ पहननी चाहिए।

के खंटर वगैरह ये चीजें पड़ी होती हैल अच्छा लगता है ऐसा आता है मतलब इसे देखने --